और यहां पे मुझे एक स्विच बोर्ड भी दिखाई दे रहा है स्विच बोर्ड का कलर व्हाइट कलर है और यहां पे मुझे एक गेट भी दिखाई दे रहा है।

ग्रे कलर की शर्ट पहनी हुई हैं और एक व्यक्ति ने आसमानी कलर की शर्ट पहनी हुई है और यहां पे बहोत सारे जोगिंग करने के सामान रखे हुए हैं।

और बाकी महिलाएं खड़ी हुई है और मुझे एक वॉचमैन दिखाई दे रहा है और एक व्यक्ति ने ब्लू कलर की जैकेट पहनी हुई है।

और रेड है एक का रंग ब्लैक है और ब्लैक के अंदर बहोत ही कलर मिक्स हो रखे है और एक का आसमानी कलर है बहोत ही अच्छा कलेक्शन है।

और उसी के पास में एक मरीज पे बैठा हुआ है और यहां पे मुझे तीन--

तस्वीर है मुझे बहोत ही हरियाली नजर आ रही है वनस्पति एरिया है और पहाड़ भी नजर आ रहा है मुझे उसके पीछे और यहां पे बहोत --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

इस तस्वीर में मुझे एक गैरेज नजर आ रहा है और एक कार नजर आ रही है जो आधी हवा में --

इस तसवीर में मुझे एक दुकान नजर आ रही है और दुकान के अंदर एक ए_सी लगा हुआ है।

वीर में मुझे टैटू की दुकान और नेल एक्सटेंशन की दुकान नजर आ रही है और यहां इस दुकान के बाहर --

और यहां पे बैठने की व्यवस्था भी है और यहां पे ब्लैक कलर के बैठने की व्यवस्था है बहोत ही सुंदर व्यू है।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

पी है और पेन पेंसिल नजर आ रहे हैं इरेजर बहुत सारी चीज नजर आ रही है मुझे यहां पे --